काफी सारी लाइटें जल रही हैं.

हम्म ये सामने एक फैक्ट्री है इसमें काफी सारी मशीनें हैं.

काफी सारे मकान हैं काफी सारे पेड़ पौधे हैं काफी सारा मकान है.

ये पार्क है पार्क के आसपास काफी सारी बिल्डिंग है पेड़-पौधे हैं सीटें हैं काफी सारे लोग हैं आसपास पेड़ पौधे हैं.

ये एक दुकान है इसमें काफी सारी लाइटें जल रही हैं काफी सारी कुर्सियां हैं अलमारियां कांच की--

हम्म जमीन पर एक मोची बैठा हुआ है इसपे काफी सारी चप्पले हैं धागे हैं.

यहां पे काफी सारे पेड़ हैं कुर्सी यहां है टेबल है।

कुकर है वाश बेसिन है अलमारी है कैमरा है काफी क्लास है.

हम्म चिमनी है इसमें काफी सारे धुए निकल रहे हैं रेलवे ट्रैक है आसपास पेड़ पौधे हैं हम्म सामने बिल्डिंग हैं धुए निकल रहे हैं.

और सामने बिल्डिंग है आसपास पेड़ पौधे हैं शाम का टाइम है शाम से पेड़ पौधे हैं.

पानी का थर्मास है आसपास पेड़ पौधे हैं.

काफी सारी टेबल हैं अलमारियां हैं खाने के चीजें रखी हुई--

ये एक सैलून है काफी सारे लोग हैं लाइटें जल रही हैं।

ये एक हॉल है इसमें काफी सारी लाइटें चल रही हैं काफी सारे लोग हैं कुर्सियां हैं काफी सारी लाइटें जल रही हैं काफी सारे लोग हैं.

ये कोई ग्राउंड है इसमें एक लेडीज चढ़ रही है काफी सारे आसपास पेड़ पौधे हैं सिड़ियां हैं खास है काफी सारे पेड़ पौधे--

ये रोड है रोड में वाहन चल रहे हैं काफी सारे पेड़ पौधे हैं स्कू टर है.

लोग है आस पास पेड़ पौधे है काफी सारे वाहन है।

ये एक टेबल है टेबल के ऊपर प्लेट है उसके ऊपर परांठे हैं काफी सारे--

ये काफी सारी दुकानें हैं दुकानों के बाहर काफी सारे वाहन खड़े हुए हैं स्टैचू खड़े हुए हैं।

घास है काफी सारे पेड़-पौधे हैं सूरज है घास है.

ये एक हॉल है इसमें काफी सारी मेज कुर्सियां हैं।

पानी है काफी सारी बंद गोबियां आसपास पेड़ पौधे हैं काफी सारी बंद गोभियां हैं।

ये सामने बिल्डिंग है बिल्डिंग मे दो पंखे लगे है।

काफी सारे गमले हैं आसपास ऊपर पंखा है बिल्डिंग है।

अ दीवार पर पोस्टर लगे हुए हैं काफी सारी लेडीज योगा कर रही है काफी सारी लाइटें जल रही हैं.

पंखे हैं गेट हैं काफी सारे अपार्टमेंट है रिसेप्शन है बोर्ड है काफी सारे लोग बैठे हुए हैं।

काफी सारे फोटोस है ड्राम है लोहे का मेज है ड्राम है.

ये एक रेस्टोरेंट है इसमें बोर्ड है ए_सी है काफी सारी लाइटें जल रही है.

काफी सारे बर्तन बोतल सब कुछ रखे हुए हैं काफी सारी लाइटें जल रही हैं.

सामने केविन है काफी सारी लाइटें जली हुई है सामने केविन है काफी सारी लाइटें जली हुई है सामने केविन --

ये कम ये एक दुकान सामने दुकानें हैं इसमें काफी सारी मशीनें लगी हुई हैं.

ये मछलियां है खाने वाली प्लास्टिक में काफी सारी खाने वाली मछलियां है प्लास्टिक में खाने वाली--

सारी मछलियां हैं प्लास्टिक में काफी सारी मछलियां रखी हुई है इकट्ठी करके--

काफी सारे बच्चे किताब कॉपी लेकर पढ़ रहे हैं एक टेबल पर बोतल है कॉपी है.

काफी सामने स्टेज है काफी सारी रंगबिरंगी लाइटें जल रही हैं ।

सामने मकान है इसके बाहर गेट खुला हुआ है आसपास काफी सारे पेड़ पौधे हैं.

ये मैदान है इसके आसपास काफी सारे पेड़-पौधे हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं मैदान में--

काफी सारे मैदान में लोग खड़े हुए हैं आसपास पेड़-पौधे हैं ग्राउंड है काफी सारी सीटें हैं.

काफी सारे लोग खेल रहे हैं आसपास घास पड़ी हुई है काफी सारे ग्राउंड में लोग खेल रहे हैं.

ये कमरा है इसमें काफी सारी मूर्तियां है हेलमेट है झंडे हैं.

ये एक दुकान है इसमें काफी सारी हैंगर्स लटक रहे हैं उसमें कपड़े लटक रहे हैं काफी सारी लाइटें जल रही है नीचे अलमारी है.

सामने बिल्डिंग है इसमें काफी सारे बोर्ड लगे हुए हैं आसपास गाड़ियां खड़ी हुई है बाइक खड़ी हुई है.

कार खड़ी हुई है आसपास बोर्ड है काफी सारे बोर्ड हैं काफी सारी दुकानें हैं.

ये पार्क है इसमें काफी सारे झूले हैं काफी सारे व्यक्ति हैं.

लोहे का सामान पड़ा हुआ है कुछ घास फूस है काफी सारे लोहे का सामान बिल्डिंग के बाहर पड़ा हुआ है.

ये एक दुकान है इसके बाहर लकड़ियों का सामान है पत्थर से रखे हुए हैं दो बाइके खड़ी--